पेड़-पौधे छोटे-छोटे हैं जो बहोत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ से बहोत दूर बहोत कुछ दिख रहे हैं। तार के द्वारा खींचे गये हैं जो बहोत हेवी हैं।

बोत गहरा पानी लग रहा है जिस कारण से पुल बनाया गया है जिसकी आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसके पुल के द्वारा इस नदी को पार किया जा सकता है। इस जैसे बनाया जा रहा है। बहोत सारे बन गए सफेद कलर के बोत हैवी लगते हैं इस पानी में।

बोटिंग करने की ताकत है जिसमें दोनों का रफ़्तार से करे तो बहोत ही स्पीड से जा सकता है। और एक व्यक्ति करेगा तो दोनों करेगा बहोत हैवी

ये घर बहोत ही अच्छा है। ये घर देखने में बहोत खूबसूरत लगता है। वो स्टील की सब बहोत सारी कुर्सियां है यहाँ पर बैठ सकते हैं मारवल बहोत अच्छी अच्छी लगी गयी है।

ए.टी.एम. लिखा गया मतलब इस ए.टी.एम. पे जाके आप पैसे निकाल सकते हो। पैसे अ में चेक करते हैं। ए.टी.एम. में जितने सारे काम हैं आप यहाँ ए.टी.एम. में सारे काम कर सकते हो ताकि बैंक ना --

ये सफ़ेद कलर का डिक्स पे जो जिलेबी रखा गा ये जिलेबी गु जिलेबी जो है टेढ़े मेढ़े होके ही बनते है। दो खाने में बहोत ही लागता है ताजा।